यहां पे बहुत सारा आदमी है सारे आदमी ने लाल कुर्ता पहना है।

इधर बहुत सारे आदमी हैं एक आदमी प्रैक्टिस कर रहा है।

उधर एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा हैं उसने पेंट और गंजी पहना है।

और यहां पे एक बहुत बड़ा बेड लगा हुआ है उसके ऊपर व्हाइट कलर का गद्दा है।

गद्दे के ऊपर दो कंबल और दो तकिया है।

यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है उसने काला टी शर्ट पहना है यहां पर बहुत सारा कुर्सियां है।

घर का रंग सफेद है उसमें सीड़ी लगा हुआ है।

उसके बगल में एक और घर है घर का रंग ब्लू है।

यहां पे बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं बहुत से आदमी बैठे हैं बहुत आदमी खड़े हैं।

एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है उसने कत्था टीशर्ट और ब्ल्यू पैंट पहना है।

यह एक घर जैसा दिख रहा है यह बहुत बड़ा है।

यहाँ पे बहुत सारा बाथरूम का सामान लगा हुआ है।

यहां पे हाथ धोने के लिए बना हुआ है। उधर एक आदमी दिख रहा है जिसने काला टी शर्ट और ब्ल्यू पैंट पहना है।

इसमें एक पकड़ने का बन हुआ हैं इसमें छेदा छेदा है।

एक आदमी ने ब्ल्यू टीशर्ट और ब्लैक पेंट पहना हुआ है।

यह एक स्कूल है स्कूल बहुत बड़ा है।

यहां एक सड़क दिखाई दे रहा है सड़क बहुत ही बड़ा है सड़क का रंग काला है।

यहां पे बहुत सारे मूर्ति है इसमें भोलेनाथ का मूर्ति है उसके बगल में एक त्रिशूल है।

उधर एक शटर दिख रहा है शटर बहुत ही बड़ा है शटर का रंग लाल है।